शुरुआत पानी का डैम का पानी आ रहा है बिलकुल मिट्टी की तरह लग रहा है पूरा मिट्टी-मिट्टी पानी आ रहा है यहाँ पे |.

हरियाली छाई है बहुत ही अच्छा लग रहा है जगह यहाँ पे --

लग रहा है की ये किसी गैरेज का है गाड़ी गैरेज में बहुत सारी भीड़ लग रही है |

दिख रहा है चंडी कुछ बिक रही है।

लगता है कि ये किसी स्कूल का है और मैडम जी लोग का ड्रेस कोड भी है।